यह एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर एक कुत्ता भी बैठा हुआ है और सामने की तरफ हमें खेत दिख रहे हैं और आसमान में बादल भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बोहोत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है लगभग सुबह क साढ़े पांच बजे का टाइम है और यहाँ पर थोड़ा भी अँधेरा है और काफी सारी गाड़ियां आ जा रही हैं।